और यहाँ फोर व्हीलर भी है और अअ ब्रेक बहुत कलर में मिल --

और वहां पे चारो तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है आप देखो जहाँ कि थाहा आपका नजर जायगा वहां तक यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ रहते है ।

और यहाँ पे एक मूर्ति भी रखा हुआ है और यहाँ पे बहुत आदमी बहुत सारे आद म बहुत दूर-दूर से यहाँ पे लोग जाते हैं फ़ोटो घिंचाने के लिए।

और यहाँ पे सामने भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा पाहार है।

और यहाँ पे छोटे-छोटे से चट्टान है फोटो घिंचाने भी आप यहाँ घूमने भी जा सकते हो आप देख --

ये देख सकते हैं आप आंगनबाड़ी में जो आंगनबाड़ी बोला जाता है गांव वाम होता है।

और ये यहाँ पे स्कूल है जो आप यहाँ पे जाके एडमिशन करवा सकते हो अपने बच्चो को।

ये एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचता है | ये ये एक गाड़ी है जो चार चक्का होता है चार चक्के वाला ये गाड़ी होता है ट्रक होता है छोटा मिनी ट्रक जिसको आप बोल सकते हो |

और यहाँ पे देख सकते हैं हरा-हरा गान-गार्डन है वहां पे बहुत अच्छा सा घर बना हुआ है वहां पे पानी का भी व्यवस्था है।

पांच रुपया कहीं भी आप जाना होगा आपको पांच रुपया दस रुपया लेगा चल पंहुचा देगा और यहाँ पे बगल में हॉस्पिटल है।

इ एक मंदिर है दुर्गा जी का आप देख सकते हैं।